ओ एक शोरूम दिख रियो है ईका आगे एक बड़ों सो पोस्टर लाग रखयो है एयरटेल नाम उ एके अंदर बहुत सो आदमी दिख रियो है एको बाहर एक आदमी जा रियो है सामने स्कूटीयां खड़ी है।

ओ एक स्विमिंग पूल सो दिख रो है जिक माई छोटा बच्चा का खेल बा ताई --